चो की लकड़ी की बनी हुई यहां पे बहोत सारे खंभे--

यहां पे बहोत सारी खिड़की और दरवाजे हैं जो इसकी चा कांच के हैं।

दीवार पर एक पर्दा भी लगा हुआ जो कि चॉकलेटी कलर का है यहां पे मेज और कुर्सी रखी हुई है।

फुटबॉल की जाली लगी हुई है।

घर को सजाया व यहां पे डी_जे भी लगा हुआ हैं।

यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है यहां पे एक लोहे का दरवाजा है।

कुर्सी लगाई गई है बैठने के लिए और चारों तरफ--

यहां पे एक बाइक खड़ी हुई है।

एक गाड़ी खड़ी हुई है जो की सफेद कलर की है।

यहाँ पे बहुत सारी वॉच रखीं हुई हैं यहाँ पे बहुत सारी घड़ी रखीं हैं।

यहां पे एक बिल्डिंग बनी हो जिस पर नारायण क्लास --

इस पर व्हाइट और चॉकलेटी कलर से पेंट किया गया है।

यहां पे कांच लगाए गए हैं।

घर पे एक कूलर लगा हुआ है।

एक बोर्ड लगा है यहां पे दीवार पर।

यहां पे शटर लगा हुआ है यहां पे बहुत सारी बाइके खड़ी हुई हैं और एक आदमी अंदर जा रहा है।

जो पानी किया जो सफेद कलर की है।

यहां पे एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और चाय पी रहा है।

और यहां पे बंगले बना हुआ है जिसका कलर व्हाइट है और नील भी है।

इसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुड्डा पार्क --